का बहुत बड़ा मकान है इस मकान के बाजू में एक ग्रीन कलर का मा --

जैसा की आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटी-छोटी लड़कियाँ डांस प्रैक्टिस कर रहीं हैं ये डांस अकाडेमी है।

खड़े हुए है और यहाँ स्टेज पर वाइट कलर की सीढ़िया बनी हुई है और यहाँ पर और बहोत प्यारी लाइटिंग भी लगी हुई है।